आस-पास में मकान दिख रहे हैं नीचे फर्श दिखाई दे रहा है।

ये गोडाउन जहां हैं उसके ऊपर टी-शर्ट दिख रहा हैं।

इस चित्र में एक रूम का दिख रहा है। इस पे काफ़ी बड़ी टेबल रखी है उसके आस-पास में कुर्सियाँ रखी हुई है।

यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे जो कि बाहर की तरफ़ खड़े हैं।

दूसरा एस एक्सिस बैंक का है बाहर की तरफ जो है।

इस चित्र में जो है ए पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

और जो है नदी का घाट भी दिख रहा है जहाँ पर भी कुछ लोग बिठाई देते उम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे की तीन लोग बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक इमारत दिख रही है जो की काफी बड़ी है।

इस चित्र में बहोत बड़ा मैदान दिख रहा है मैदान के उस पार जो कुछ हरा-हरा फसल जैसा दिख रहा है।

इसमें जो चित्र भी लगा हुआ है आइस-क्रीम के कोन का --

दूर जो है झाड़ भी दिखाई दे रहा है।

नीचे पे माताजी की फोटो लगी हुई है नीचे एक --

ये चित्र एक मंदिर का दिखाई दे रहा है ये मंदिर काफी बड़ा है और बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे लोहे की जाली लगी हुई है।

और नदी में बहुत सारा पानी दिख रहा है और यहाँ पे जो है सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि लालिमा छा रही उसकी ।

इसमें जो है कुछ लडकियाँ दिखाई जा दी जा रही है जो कि जाते हुए दिख रही है।

और यहाँ पे जो है बाँस का जो बना हुआ है जिसपे रस्सी से जाली बनाई गई है बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहे हैं।